ये लड़की दिख रही है। माक्स लगा के अंदर जा रहे हैं। बोहोत बड़ा गय बनाया हुआ है। बोहोत अच्छे लग रहे हैं देखने में। हाथ में कॉपी लिए जूता पहने हुए --

यहाँ चार चक्का भी लगा हुआ है लोगा गला में हरा गमछी लटकाए हुए हैं बहोत अच्छे लग रहे हैं देखने में घर बहोत अच्छे बने हैं। हरे-भरे पेड़-पौधे --

यहाँ पे देखिये एक टॉवर है यहाँ पे घर बनाया गया है बहुत बढ़ियां लग रहा है देखने में| हरे - भरे पेड़-पौधे भी हैं हरे -हरे घास भी हैं।

बोहोत अच्छे लग रहे हैं देखने में ढेर सारे घर बनाया हुआ हैं बोहोत अच्छे लग रहे हैं देखने में। यहाँ पेंट भी घर में किया हुआ है। फूल तूल लगाया हुआ है। बोहोत अच्छे लग रहे हैं घर देखने में बोहोत बढ़िया लग रहा है। ढेर सारे घर भी हैं।

उजला रंग पेंट किया है बहोत अच्छे लग रहे हैं देखने में ये है बहोत अच्छे लग रहे हैं देखने में। उजला पीला ब्लू सब है। गेट भी लगा हुआ है बहोत अच्छे से टंगे पानी भी बहोत बढ़िया लग रहा है। देखने में बहोत अच्छे लग रहे हैं।

गाड़ी लगा हुआ बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में हरे-भरे पेड़ पौधे भी ढेर सारे में घास-तास जो है ढेर सारे जंगल झाड़ ढेर --

काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में इसके अंदर ढेर सारे लोग जा रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है जो सारे लोग हैं उसके अंदर जा रहे हैं पूजा करने के लिए देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है।